नदी है। यह नदी है। यहाँ पर मछलियाँ पकड़ के --

आदमी जूता पहना हुआ है।

इसमें टेंट लगा हुआ है।